एक्वेरियम के अंदर बहोत सारी मछलियां--

बहोत अछ सुंदर सुंदर सी हैं साइड में कुछ--

और कुछ क्रिल भी लगा हुआ है।

चाइल्ड एजुकेशन कैसे अच्छा है और काम आगे काम आ सकता है उनकी लाइफ में वो बताया जा रहा है।

रास्ते में जाते हुए संबलपुर का एक बहोत अच्छा जगह है।

एक गवर्नमेंट ऑफिस है जो की ग्रीन कलर में है से डबल स्टेयर होके है।

कुछ कांच के ग्लास के दरवाजे हैं।

वहां पे एक मंदिर भी है मंदिर में सत्संग चल रहा है ऊपर झूमर लगा है जिसकी लाइट्स बहोत अच्छी है।

कुछ मंत्र भी गा रहे है पंडित जी--

बाइक के ऊपर हेलमेट भी रखा हुआ है लोग लाइन में खड़े हैं।

कुछ पास ही होते हैं वहां पे वाशिंग मशीन में साफ किया जाता है उसको धोके बहोत अच्छे से दिया जाता है।

स्विच बोर्ड है स्विच बोर्ड के साथ साथ टेबल के ऊपर एक लैपटॉप है।

एक फील्ड है जहाँ पे कुछ मैराथन या फिर कम्पटीशन चल रहा है।

एक पोखरी है जिसमें पानी है।

और दो चार भैसें हैं दो भैंस तो सामने देख रहीं हैं।

खंबे गड़े हुए हैं पेड़ भी दिख--